यहाँ पिक्चर में हम एक लकी सी_एन_जी सेंटर देख सकते हैं।

दो मारुती सुजुकी ऐंड एक हौंडा की है जो मारुती सुजुकी की दोनों ये टेक्सी --

और जो ऊपर से टीन से वाल घिरा हुआ है बहोत सारी टूबलाइटे एंड बल्ब हैं।

यहाँ पे हम देख रहे हैं की दो होरिज़न्टल यल्लो ब्लैक कलर के दो पिलड़ हैं।

मंदिर को देख सकते हैं जोकि वाइट ब और रेड कलर का है इसके रूफ पे तीन फ्लोवर पे अलग अलग जेपनीज़ टाइप रूफ है।

यहाँ नीचे पटरी सीढ़ी से उतर के सीधा पटरी दी गयी है जाने के लिए यहाँ पे घास दोनों साइड लेफ्ट एंड राइट और कुछ पेड़ दिख रहे हैं।

इस पिक्चर में हम जी_जी_एस हाइड्रोलिक प्रेस की एक शॉप है।

यहाँ पे हम दो वर्कर्स को देख सकते हैं जोकि एक मशीन में अपना काम कर रहे हैं।

पेंट से पैंटेड इनकी खिड़कियों में शीसे लगे हुए हैं और लकड़ी की खिड़की है लकड़ी से पेंट भी किया गया है और एक दरवाजा यहाँ पे एक बुलेट खड़ी हुई देख सकते हैं।

पीछे जो घर है उसके ऊपर एक क्रॉस का निशान और एक वाटर की टंकी जेसा ब्लू कलर का दिख रहा है।

रूट्स बास्केट भी देख सकते हैं जोकि अलग अलग फ्रूट्स से भरे हुए हैं और ऊपर अलग अलग फलॉवर कलर के हैं।

इंडियन का फलैग देख सकते हैं जिसमें तीन कलर होते हैं एक ऑरेंज एक वाइट और एक ग्रीन ।

लाइक एलोवीरा टाइप लग रहा है लेकिन एलोवीरा नहीं है ये एक ग्रीन फॉर्म है।

इस पिक्चर में हमे एक हवेली दिख रहे हैं जो की वाइट कलर की है यहाँ पे हम एक लड़के को भी देख पा रहे हैं।

इस पिक्चर में हम एक ए_टी_ऍम देख पा रहे हैं जोकि ब्लू कलर और ये ये इधर येल्लो कलर के बोर्ड हैं।

इस पिक्चर में हम एक बिल्डिंग देख पा रहे है जोकि वाइट और ऑरेंज कलर से पेंटेड है उसके बाहर एक कार पार्क है।

इस पिक्चर में हम एक रुम का सीन देख पा रहे हैं जहाँ पे एक कुर्सी और एक टेबल देख पा रहे हैं यहाँ पे एक गेट भी है जिसमें --

इस पिक्चर में हम एक साइंस लैब देख सकते हैं। जहां पे बहोत सारे मॉडलस रखे हुए हाथ के और बॉडी सरकुलेशन के--

यहाँ पे हम एक बॉटल भी दिखती है जोकि स्लिप पे रखी हुई है नीचे बहोत सारे स्टुल्स हैं।

इस पिक्चर में हम एक फ़ैक्ट्री देख सकते हैं जहाँ पे हमे दो कंटेनर बड़े बड़े दिख रहे हैं।

इस पिक्चर में हम एक सोफा देख सकते हैं जो कि एल साइज का है या--

यहा उसके सामने एक टेबल रखा है उसके सामने दो और सोफे सिंगल सिंगल सीटेड रखे हुए है।

जोकि प्लास्टिक के हैं पीछे हम बहोत सारे पेड़ देख सकते हैं।

यहाँ पीछे हम कुछ बिल्डिंगे देख सकते हैं और एक टावर बिल्डिंगे जो वाइट कलर की है।

जहाँ पे बहुत सारे फाइलें और लैपटॉप रखा हुआ है एक लड़का जो मेरून कलर का शर्ट पहना है वो--

सामने प्रोजेक्टर पे कुछ इंडीगेट कर रहा है समझा रहा है हम पीछे एक डोर भी देख सकते हैं जोकि ओपन है।

हम इस पिच्चर में ग्लासों का एक पिरामिड देख सकते हैं जिसमें हमें टोटल बीस ग्लास नज़र आ रहे हैं।

इस पिक्चर में हम टोटल पाँच साड़ियाँ देख सकते हैं जोकि ब्लू स्काई ब्लू --

एक साड़ियाँ जोकि पूरी तरह से दिख रही है जिसको सो के तरह लगाया गया है।

इस पिक्चर में हमें टोटल दो गाड़िया दिख रही हैं जो की गैरेज में पार्क है।

ये एक वॉशिंग गैरेज है जो कि ऊपर से टीन से कवर है और राइट साइड वाइट कलर की दीवालें हैं यहां पे हम दो ग्रीन कलर के--

पिलर देख सकते हैं जोकि सफाई के काम आते हैं।

लोग खड़े हैं मैं बैठा हूँ मैं एक बस भी दिख रहा है।

इस पिक्चर में हम कुछ माला देख सकते हैं जोकि मोगरे के फूल और कमल के फूल की बनी हुई हैं।

इस पिक्चर में हम एक फल का शॉप देख सकते हैं जहां पे अनार ब्लैक अंगूर केला संतरा और--

और शॉप जो है वो ओपन है यहाँ हम कुछ पर्दे भी देख सकते हैं।

और पीछे जो दरवाजे हैं वो भी लकड़ी के बने हुए हैं उसके बगल में एक बेड है जोकि ओपन है।

अभी पूरा तैयार नही है वो भी लकड़ी का बना हुआ है इस रूम का जो फर्श है वो पूरा वाइट टेल्स से कवर है।

इस पिक्चर में हम एक सादी का फंक्शन देख सकते हैं जहाँ पे स्टेज जो है वो बहोत ही सुंदर सजाया गया है उसके बगल में हम एक मंडप देख सकते हैं जहाँ पर बहोत सारी कुर्सियाँ --

इस पिक्चर में एक रूम में बहोत सारे लोग योगा करते दिख रहे हैं पीछे।

सीन भी है सवास्तिक का और भी अलग अलग राउंड रेप्टिंग --

और कुछ बेलनाकार के पार्ट्स है जोकि अलमारी में सजाए गयए है।